यहां पर एक आदमी जाते हुए दिखाई दे रहा है बोट में एक पीछे आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारी छोटी-छोटी तस्वीर लगे हैं जो कि साइड साइड में हैं।

और यहां पर काफी सारी चप्पल दिखाई दे रहे और बगल में एक ठंडा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है पीछे केले दिखाई दे रहे हैं केले के पत्ते--

यहां पर कुर्सियां दिखाई दे रही है छोटे छोटे दो गमले दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर काफ़ी सारा बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है बगल में।

यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है और बीच में ओम बना हुआ है।

और यहां पर इवेंट होने वाला है दिख रहा है उसमें पोस्टर में लिखा हुआ है।

बगल बगल में चौड़े चट्टानें दिखाई दे रही हैं और नदी दिखाई दे रही है।

शीशा दिखाई दे रहा है और पीछे लाइटें भी दिखाई दे --

और बगल में एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ था साफ साफ--

यहां पर कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं एक बार कोड दिखाई दे रहा है।

उसके हाथ में भी एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है वॉर जोकि वह हाथ में पकड़े हुए हैं।

यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है पीछे कुछ सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।